इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इलेक्ट्रिक का खंबा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ के सामने खाली जगह है अम दिखाई दे रही है।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

और बीच में चार पिलर लगे हुए हैं और पिलर के ऊपर कुुछ तंबू जेसा दिखाई दे रहा है और बीच में एक मूर्ति खड़ी दिखाई दे रही है धन्यवाद|

इस चित्र में अंधेरा दिखाई दे रहा है और अँधेरों के बीच कुछ तंबू दिखाई दे रहे हैं और तंबू के बीच में आ कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है।

और दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई है| ऊपर में एक लाइट है और आजू-बाजू में दो-तीन लाइट दिखाई दे रहे हैं| आ बाहर में बाइक खड़े हैं और बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

और लंबी बिल्डिंग के ऊपर अ तीन कलर दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ अँधेरे का समय है और गाड़ी के पीछे भी कुछ घर हैं दुकानें दिखाई दे रही है और यहाँ खुली जगह मालूम पड़ती है धन्यवाद।

और कुछ नजर आ रहे हैं| गाड़ी वाहन साइकिल खड़े दिखाई दे रहे हैं और रोड पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद।

इस चित्र में शिवलिंग दिखाई दे रही है और शिवलिंग के ऊपर नागफनी दिखाई दे रही है दीवाल के ऊपर अ माता रानी की तस्वीरे दिखाई दे रही है।